रानी बाग के जैसा लग रहा है वहां पे--

बड्डे पार्टी सेलिब्रेशन सा लग रहा है बच्चे का बड्डे लग रहा है उसके मम्मी पापा है बड़ा लेयर वाला केक है।

मोदी कोड़ा सर्विस का सर्विस सेंटर है कुछ कारे खड़ी है बाहर की तरह ब्लैक कलर की कार है ग्रे कलर का सर्विस सेंटर है।